बाजू यहां पे की बोर्ड रखे हुए।

बड़ी सी रैली टाइप दिख रही है यहां ऊपर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।